ये एक रेलवे स्टेशन है जहां पर रेल की पटरी दिखाई दे रही है।

और ऊपर से एक खंभा है जहां पर लाइटें लगी हैं।

बहोत सारे बच्चे कुर्सियों पर बैठे हैं।

ऊपर हरियाली है नीचे मिट्टी का मैदान है और बड़ा सा कीकर का पेड़ है।

बड़ी सी दुकान है सुंदर सा कैफे हैं।

यहां एक बस है जिसके ऊपर और बस के अंदर बहोत सारे पैसेंजर हैं।

यहां हरा भरा पेड़ है पीछे नीला आसमान है।

यहां पर बहोत साफ सफाई है।

नीचे बहोत सारी मिट्टी है और ट्रक में टायर लगे हैं।

एक आदमी होटेल में खड़ा हैं जिसमें लाल रंग के बलून लगे हैं।

पीपल के नीम के वृक्ष है चारों तरफ सफाई है पेड़ पौधे तिरंगा झंडा है।